आपको भी शादी का दूल्हा दिखाई दे रहा होगा।

शीशे मुझे दिखती हुई नजर आ रही है शायद।

आपका इसमें क्या कहना है आप जरा इसमें सोच समझ के--

और यहाँ पे काफी सारे बस स्टैंड में भी और भीं बहोत काफी लोग यहाँ पे दिख रहे है जैसे कि मुझे समझ आ रहा है।

यहां मुझे किसी रेस्टोरेंट का दृश्य नजर आ रहा है आपको क्या जिसका दृश्य नजर आ रहा है जरा इसमें कमेंट और जांच परख के मुझे--

नजारा नजर आ रहा है आपको भी शायद इसमें वॉटर फन सिटी पार्क का--

यहां पे बहोत सारे पेड़ पौधे भी इसमें--

बहोत भीड़ है इसलिए बुक मिलना यहां पे मुश्किल होता हुआ दिख रहा है।

दिखाई देता हुआ नजर आ रहा होगा जैसा कि मैं देख पा रहा हूं--

यहां पे एक बोहोत सारी बुक की स्टेशनरी भी दिख रही है जैसे कि मैं देख पा रहा हूं--

आपको भी यहां बुक स्टोर में स्टेशनरी --

जैसा कि मैं देख पा रहा हूं उसमें शायद आपको भी--

बेड भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है और काफी सारे कपड़े भी यहां पे बिखरे हुए--

इस ज्वेलर्स के शॉप को लेके आपका इसमें--

इसमें आपको क्या समझ आ रहा है जरा देख के बताइए।

जो कि जिम करने के लिए बेस्ट होते है इस जिम को लेके आप का क्या कहना है आप इसे देख के और समझ के बताईए जरा --